यहां अलग अलग प्रजाति वाले पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसके आजू बाजू हरे हरे लत्तर वाले पौधे लटके हुए हैं।

और लखनऊ ऑटोमोटिव्स भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में एक खाली सड़क दिख रही है तथा उसके पार दूर तक हरे भरे खेत नजर आ रहे है।

लाल कलर के अक्षर से शिवानी पब्लिक स्कूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एवं उस पर एक बच्चे की तस्वीर भी छपी हुई है।

सीलिंग पर कई सारी डिजाइनर लाइटे जलते हुई नजर आ रही--

तस्वीर में बाईं ओर हमें कई सारे लगेज ट्रॉली लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

थर्टी परसेंट जी_एस_टी एप्लीकेबल और गर्मेंट रिबेट पोस्टर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

रिक्शे पर से दो महिलाएं उतरती हुईं नजर आ रही हैं।

तस्वीर किसी जिम के अंदर का है जहां कई सारी अलग अलग प्रकार वाली रंग बिरंगी मशीने लगी हुई है जो एक्सरसाइज करने में उपयोगी है।

तस्वीर में एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां एक मेट्रो खड़ी है।

प्लेटफार्म पे पीली कलर लाइने लगी अ बिछी हुई नजर आ रही हैं।

दाईं और एक शख्स आता हुआ इधर दिखाई दे रहा है।

यहां और भी अलग अलग पानी वाले पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें हरे कलर के पत्ते लगे हुए नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में सामने की ओर दो बड़े बड़े व्हीकल्स नजर आ रहे हैं।